व्हाइट कलर का गेट है और कुछ मिरर्स लग रखे हैं जो देखने में काफी अच्छा लग रहें है ब्राउन कलर की टेबल और चेयर भी है।

और इसके सामने जस्ट एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है उसके सामने टैक्सी लग रखी है जो ब्लैक एंड येलो कलर की है उसके जस्ट पास में एक कार है जो व्हाइट कलर की है।

ये कोई स्कूल लग रहा है जहां पर मार्बल टाइल्स है बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है चारो फैंस है जो थ्री फैंस मे आते है।

ब्राउन कलर की लड़कियां रखी जहां पर जया के प्रोडक्ट लगा रखे हैं जैसे कि शूज --

और पीछे येलो कलर के प्लेट्स लग रखे हैं देखने में तो ये जिम जैसा कुछ लग रहा है।

सामने बहुत सारे मिरर हैं ताकि बॉडी बनाते हुए लोग अपने आप को देख सकें कि बॉडी अब कैसी बन गई है।

एक कांच में बंद कोई प्राचीन काल की कोई चीज है जो ब्राउन कलर की टेबल में पैक्ड है और ब्लू कलर का फर्नीचर मिक्स है इसमें --

फर्नीचर होगा ब्राउन कलर का आगे दीवाल सज रखी है पिंक और येलो कलर में साथ में ग्रीन कलर भी मिक्स है।

और फर्नीचर व्हाइट कलर का साथ में कैची भी है।

ये मोधो की प्रिंटिंग मशीन है पीछे काफी सारे स्विच लग रखे हैं बैकग्राउंड ब्लू और ब्राउन कलर का --

यहां पे एक पॉलीथिन भी बिखरी हुई है लगता है यहां पे कोई आ के गया था बट ये देखने में एरिया काफी अच्छा है यहां पे एक घर बन सकता है।

फुटबॉल्स हैं जो येलो रेड ब्ल्यू ब्राऊन --

तो ये माला खरीदने वाली दुकान है जहां पे शादी में युज होने वाली व्हाइट एंड पिंक एंड रेड कलर में मालाएं--

इसका इंटरफेस है जो पिंक कलर और येलो कलर का है यहां पे कर खड़ी है जिसका रंग व्हाइट है।